एक ब्यक्ति है जो मोटरसाइकिल से आगे कि तरफ जाता हुआ दिख रहा है।|

वहाँ अंदर कुछ लोग भी हैं। किनारे की तरफ व्रक्ष की कुछ टहनियाँ भी हैं। जो लटकती हुई सामने दिखाई दे रही हैं।